और बहुत सारे लोग दूर-दूर से आते हैं यहां पर पैसे उठाते हैं और यहां पे एनी टाइम मनी उपलब्ध होती हैं।

चर्च है और यहां पे बहुत सारे लोग आते हैं क्रिश्चियन धर्म के लोग प्रे करने यहां पर क्रिश्चियन धर्मो की शादियां भी होती है।

बहोत ही अच्छा सुगंध होता है।

और उससे अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अपने और अपने परिवार का पालन-पोषण करते --